खिलाड़ियों के बैग भी यहाँ पे दो-तीन रखे नजर--

मुझे इस चित्र में एक झरना जैसा नदी नजर आ रही है पीछे की तरफ बहुत हरे भरे पेड़ पौधे--

मुझे इस चित्र में द्वारका पैलेस नजर आ रहा है जो ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का--

कलर का यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है साइड में।

सामने ही कुछ लोग हैं आपस में काम कर रहे हैं और एक औरत और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा पहाड़ पीछे दिखाई दे रहा है आगे कुछ बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं एक आदमी खड़ा है।

हरे-हरे पौधे हैं कुछ पत्थर बड़े-बड़े यहाँ पे रखे हुए हैं और पानी बह रहा है।

ऑफिस जैसा कुछ बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ बहुत सारी हरियाली है रोड हैं।

टॉय अंकल लेट्स प्ले नाम की--

और ऑरेंज कलर के ये पाइप भी दिखाई दे रहे हैं बिना प्लास्टर की दीवार भी नीचे दिखाई पड़ रही।

खड़े दिखाई दे रहे हैं एक गाड़ी नजर आ रही है और अन्ननास भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

कुछ बहुत सारी कुर्सियाँ एक तरफ और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की बहुत सारी कुर्सियाँ दिख रही हैं।

और एक पंछी सूखी हुई घास नजर आ रही है और इधर पास में कुछ--

और नीचे कांच के अंदर भी समान दिख रहा है।

शर्मा ढाबा नजर आ रहा है।

पेड़-पौधे रखे हुए हैं हरे हरे।

सफेद रंग की बिल्डिंग पुती हुई है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

पलंग बिछा हुआ है लाल कलर का खंभा--

एक बोर्ड खड़ी नजर आ रही है।

मुझे इस चित्र में एक कार --

गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रही हैं।

एक साड़ी पहनी हुई औरत--

संस्कृति गर्ल्स एंड वर्किंग वुमन हॉस्टल --

एक लड़का खड़ा हुआ है सफेद कलर की टी-शर्ट पहन के।

सफेद और काली सीलिंग है नीचे की ओर टाइल्स लगे हुए हैं।